के अंदर कलर के डिब्बा बहोत सारा रखा हुआ है।

इस पिक्चर में हॉस्पिटल दिखाई दे रही है।

यहां पर एक छोटा सा घर देखने मिल रहा है।

चर्च के अंदर घुसने के लिए सीढ़ी भी बनाया हुआ है।

उस दुकान में द चेन्नई शेक लिखा हुआ है।

इस पिक्चर में मुझे रोड देखने को मिला है।

पिक्चर में मुझे चर्च नजर आ रही है।

इधर में फ्लावर पॉट भी दिखाई दे रही है।

इस पिक्चर में मुझे घर दिखाई दे रही है।

डिब्बा में बहुत सारा मिठाई भी डाल के है।

सामने डस्टबिन के लिए बकेट रखा हुआ है।

पेट्रोल पंप में बहोत सारा इंसान देखने मिल रहा है।

राइट में व्हाईट कलर की ग्लू भी देखने मिल रही है।

रोत में एक वाइट कलर के गाड़ी भी चलते हुए नजर आ रहा --

एक बड़ा सा रोड भी दिखाई दे रही है।

रुम के अंदर सोफा भी दिखाई दे रही है।

इस पिक्चर में मुझे-ए-ए कपड़ा के शॉप देखने को मिला है।

दुकान के अंदर पानी बोतल भी रखा हुआ है।

दुकान के पीछे तरफ में एक इंसान चलता हुआ नजर आई है।

चर्च के अंदर बहुत सारा बेंच रखा हुआ है।

घर के पीछे पाइन ट्री भी दिखाई दे रही है।